और शर्ट पेंट भी सजा कर रखे हुए हैं अलमारी मे।

गाड़ी आते-जाते हैं। दौड़ के आभी पैदल जा रहे हैं। ये काफी चौड़ी रोड है। यहाँ पे धूप निकला हुआ है। एक व्हाइट कलर का फोर व्हीलर लगा हुआ है।

ये लड़का है जो छत पे खड़ा है और अपनी सेल्फी ले रहा है। ये रोड साइड में खड़ा होकर ये काफी लम्बा रोड गया है। .

ये एक घर बन रहा है।